यह एक बुक स्टोर है और यहाँ पे बहुत सारे बुक्स मिलते हैं।

इस नदी में पानी हमेशा बहती रहती है और नदियों में --

यहाँ पे बहुत ही अच्छा वातावरण होता है ।